और यहाँ पे स्वागत लिखा हुआ है और ऐसे देखने में बहोत ही सुन्दर लग रहा है मंदिर का डेकोरेशन भी बहोत अच्छे से किया गया है माता की ऊपर मे जो पिक बना हुआ है इसके ऊपर छत्ती दिया हुआ है देखने में बहोत ही सुन्दर लग रहा है बहोत अच्छा है।

ये फ्रेश लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है मिर्ची है मिर्ची भी खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत बड़ा-बड़ा मिर्ची है बहुत हरा-हरा मिर्ची --

चे चर्च में बहोत सारे फादर है जो एक साथ कुछ बोल रहे है यहाँ पे एक आंटी भी है उन्होंने इनका ड्रेस बहोत अच्छा है और इनके पास में और एक आंटी है ।

यह देखने में बहोत सुन्दर लग रहा है ये ये नजारा बहोत अच्छा है आसपास बहोत सारे पेड़-पौधे हैं देखने में बहोत सुन्दर लग रहा है ऊपर में आसमान भी है ।

देखने में बहोत सुन्दर एक येलो कलर का टेंकी है जिसमे पानी भरा हुवा है और यहाँ पे पास में एक मंदिर है जिसके त्रिशूल लगा हुवा है देखने में बहोत सुन्दर है वहा पे एक बच्चा खेल रहा है पत्ते से और वहा पे कुछ पेड़ --

बैठने के लिए चेयर है कैमरा मैन सब भी है साइड में खड़ा हुआ पिक्चर उठा रहे है देखने में बहोत सुन्दर है बहोत अच्छा लग --